यहां पर एक ढाबा है जिसका नाम मुखिया जी ढाबा और फैमिली रेस्टोरेंट है।

यहां एक झोपड़ी बनी हुई है और एक घर बना हुआ है यहां पर तीन भालू घूम रहे हैं।